फोन में कुछ सामान रखा हुआ है।

साइड में ग्रील से बाउंड्री हो रही है।

टूबेल चल रही है है।

एक लड़के ने बैग टांगा हुआ है।

यहां पर एक रूम है।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

इसमें अलग अलग ड्राइंग है।

स्लाइड है नीले कलर की।

रंगीन लाइट है सफेद लाइट है लाल लाइट है।

पिछे रंग बिरंगे लाइटे हैं।

यहां पर एक ऑफिस है ऑफिस में ए_सी है पंखा है।

टेबल के ऊपर एक एप्पल का लैपटॉप रखा हुआ है।

पीछे दीवार पर लिखा हुआ है डी ए आर एस एच ।

बड़े से के पत्थर के पीछे एक छोटा पत्थर है।

पंख बने हुए हैं लाइट जल रही है।

कुछ पत्तियां हैं एक मोटर साइकिल खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक कुत्ता जा रहा है ब्लैक कलर का।

यहां पर एक दुकान है जिसमें कुछ मिठाइयां रखी हुई है।

साइड में एक लोहे का स्टैंड है।

घर के ऊपर थंबले हे।

कुछ ए_सी लगी हुई है एक औरत जा रही है।

कुछ लोग सिर पर तसले ले जा रहे है।

लकड़ी की पट्टी लगी हुई है।

साइड में भी घास है।

पीछे एक घर बनने लग रहा है।

बराबर में भी खम्भे दिख रहे हैं लाइन दिख रही है।

एक आदमी के हाथ में एक घड़ी है फोन है।

नीचे फल पड़ा हुआ है।

कुछ रस्सियां है एक बोरी टंग रही है।

ऊपर भी शीशे हैं साइड में एक डिजाइन बन रहे हैं।

ये कोई बैग रखा हुआ है।

ब्राउन कलर का कॉलेज है।

एक टेबल रखा हुआ है ब्राउन कलर का।

पीछे कुछ टॉफियों के डिब्बे रखे हुए हैं। बिस्कुट हैं।

यहां पर गाड़ी धो रही है।

यहां पर एक कमरा है।